मीटिंग हॉल मिनी मीटिंग हॉल है ये।

ये कोई ऑफिस है इसमें लोग बैठे हैं चेयर्स हैं ब्लैक चेयर्स हैं और कुछ लैपटॉप्स कंप्यूटर रखे हैं।

और कांच का पूरा बाउंडेशन है।

बट कागज के भी हो सकते हैं पता नहीं किस चीज के फ्लावर्स है ये--

स्पाइडरमैन वगैरह जैसा खड़ा हुआ है वो दिखा रहा है उल्टा और इसमें और भी गेम है।

ये कलर गेम है जिसमें कलर्स को दिखा--

यहां पे किसी की शादी हो रही है यहां पे चार तीन लड़कियां बैठी हैं।

और बहोत सारी हैं जिसमें व्हाइट कलर का पोशर लगा हुवा हैं।

और बहोत सारी फसल लगी हुई है ग्रीन ग्रीन ग्रीन और सामने एक झोपड़ी बनी हुई है एक और यूनिक सा पेड़ लगा हुआ है।

और हर लाइट यूनिक है टेबल लंबी टेबल है।

लाइट है और औरतें इसमें गेम देख रही हैं टी_वी सी देख रही हैं और कुछ खाना खा रही हैं कुछ पानी पी रही हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक कॉपी किताब की दुकान है।

कॉफी ही कॉफी कॉफी ही कॉफी रखी है।

ब्यूटी पार्लर आशा ब्यूटी पार्लर --

आशा यहां भी आशा का बैनर लगा हुआ है।

कुछ बिल्डिंग है जो सामने से बहुत बिल्डिंगें दिख रही हैं।

दो मोटरसाइकल है इ साइकल है एक साइकल के--

ग्रीन कलर की मैट लगी हुई है।

और हुए टमाटर कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है।

कुछ बहुत अच्छे है कुछ बहुत खराब है मतलब हर तरीके के टोमेटो है यह।